तो जैसा की दोस्तों आप इस तस्वीर में आप देख पा रहै हो इस तस्वीर में आपको ये ऊँची--

यानी की ये कार्यालय है जहाँ पर कार्यशित काम होते है।

जैसा की दोस्तों आप इस तस्वीर देख पा रहै है इस तस्वीर में आपको यह जिम --

ये वर्क (work) नाम का तो बैनर (banner) नजर ही आ रहा होगा। ये वर्क (work) नाम पढ़ के तो आप समझ ही गए होंगे ये जिम (gym) है जहा पे की एक--

पुरुष अपनी बॉडी बना रहा है इस पुरुष ने सफेद रंग का पैंट सफेद रंग का एक इनर पहन रखा है जिसे पहन कर--

और पीछे आप देखो तो यहाँ पर बॉडी वेट लॉस करने वाली मशीन पर एक लड़का नजर आ रहा होगा जो की वर्क आउट कर रहा है।

ताकि आप इस तस्बीर मे देख पा रहे हो इस तस्बीर में आपको कृष्णा इ शॉप नाम का ये दुकान तो नजर ही आ रहा होगा जोकि की कपडे की दुकान है और चप्पल की दुकान--

तो जैसा की दोस्तों आप इस तस्वीर में देख पा रहै हो इस तस्वीर में आपको डी डॉट सर --

जैसा की दोस्तों आप इस तस्बीर में देख पा रहे हो इस तस्बीर में आपको अजंता डेरी नाम का और उसके बगल में रेन--

जो की नाम का ये दुकान तो नज़र ही आ रहा होगा अजंता डेरी यानी ये दूध की दुकान है।

वरदे एजुकेशन कॉलेज और ये सी जी नाम का ये कॉलेज तो नजर ही आ रहा होगा यानी की यह गवर्मेंट कॉलेज है जहा पर की--

क्या प्राइड है और क्या कॉन्टिटी है कितना चीज कितने का मिलेगा? जोकि यहाँ एक लड़की खड़ी होकर पढ़ रही है ये --

जैसा कि दोस्तों आप इस तस्वीर में देख पा रहे हो इस तस्वीर में आपको यह खुले गार्डन में खुला खेत और खुला वाओ आप ऊपर तो देखो --

और यानी कि ये पहला वाला तो ए. टी. एम. है दूसरा वाला जनरल डाकघर है और उसके नीचे कार मारुति स्कूटी जैसी चीजे खड़ी है।

अक्सर यह डाकघर गाँव इलाकों में यूज होता है क्योंकि वहाँ पर लोगों को अपने मैसेज तो पहले भेज नहीं सकते थे तो लोग अपने खत लिखकर खत द्वारा --

जो की काफी अच्छी तरीके से मंडप पर बना करके स्थापित की गई है और अगल-बगल सफाई भी रखी गई है और यह फोटो के--

आप को इस दुकान में नज़र ही आ रही होगी और क्वालिटी की बात की जाए तो देखने में क्वालिटी भी काफी है जबरदस्त लग रही है।

ये एक ब्यूटी पार्लर है जहाँ पर के मैनीक्योर पेडीक्योर ब्यूटी से रिलेटेड सारी चीज होती है अगर इस--